इस इमेज में सामने देखिएगा यहां पे एक रोड दिखाई दे रही है जहां पर कुछ लोग चल रहे हैं और यहां पर एक सामने बड़ा सा चर्च भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में सामने यहां पर देखियेगा एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है और जहां पर सुंदर सी लाइटें चम चमकती हुई दिखाई दे रही हैं।

इस इमेज मे देखियेगा यहा पे सामने एक गैरेज दिखाई दे रहा है जहां पर देखियेगा ये आदमी नीचे बैठकर कार की रिपेयरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में यहां पर देखिएगा एक बड़ा सा आ ग्राउंड दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ लोग यहां पर स्केटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक रास्ता दिखाई दे रहा है और बड़ा सा फाटक भी लगा हुआ है यहां पर एक लाल रंग की बाइक भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पे देखिएगा सामने यहां पर एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है और नीचे देखिएगा बहुत ही खूबसूरत सी टाइल्स नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पे सामने कुछ लोग चाट खाते हुए दिखाई दे रहे है और सामने बड़ी सी नदी है और दो तीन नाव भी नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पे सामने एक लेडीजोंकी सामान की दुकान दिखाई दे रही है और ऊपर यहां पर अ प्राइस भी लिखी हुई नजर आ रही हैं।

इस इमेज में सामने देखिएगा यहां पर बड़ा सा मॉल दिखाई दे रहा है और यहां पर देखिएगा काफी सारी सीढ़ियां भी नजर आ रही हैं।

इस इमेज सामने यहां पर देखिएगा एक बड़ा सा फाउंटेन दिखाई दे रहा है और यहां पर देखिएगा पानी चलता हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में सामने यहां पर देखिएगा एक अ गेस्ट हाउस दिखाइ दे रहा है और नीचे कार खड़ी है और जिसके ऊपर कवर लगा हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में सामने देखिएगा यहां पर एक हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है जिसपे लिखा हुआ है आर_एन मल्टी स्पेशलिटी लीलि हॉस्पिटल --

इस इमेज में यहां पर सामने देखिएगा कुछ कार खड़ी भी दिखाई दे रही है और सामने बड़ी से इमारत भी नजर आ रही है यहां पर कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर देखिएगा सामने एक मंदिर दिखाई दे रहा है और ऊपर देखिएगा काफी सारी सुंदर सी लाइटों से अह चमक रहा है मंदिर।

यहां पर देखियेगा सामने एक ओपन रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है जहां पर देखियेगा बाहर कुर्सी टेबल लगे हुए हैं और कूलर भी रखा हुआ नज़र आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर सामने देखिएगा एक सुंदर सा किला दिखाई दे रहा है और उसके पीछे एक बड़ा सा पर्वत भी पहाड़ भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में सामने देखिएगा यहां पर कुछ दुकाने दिखाई दे रही है और यहां पर देखिएगा बाइक के पास में कुछ लोग बैठे हैं और कुछ लोग खड़े हुए नजर आ रहे है।

यहाँ पर देखियेगा इस इमेज में यहाँ पर एक रोड दिखाई दे रही है जहाँ पर नीचे लाइट से कुछ कारे और मोटरसाइकिल चलती हुई नजर आ रही है।